डॉगस भी है एक एक एक जो है गोल्डन कलर का है दो ब्लैक कलर के है और सामने बेंचेस पर --

कूटीस वगैरह खड़ी हुई है और यहाँ पर बहुत जादा रेड कलर के पोस्टर वगैरह लगे हुए है ।

डाला हुआ है और यहां पे टेबल जो है इसके साइडों पर है पिंक कलर की चैन लगी और सारे टेबल के ऊपर वाली साइड पर व्हाइट कलर का कपड़ा है।

ईंटे पड़ी हुई हैं और टैंको पर टैंक जो हैं छोटी टैंक होते हैं वो कटा पड़ा हुआ है सामने एक बहोत बड़ा देश का पड़ा हुआ है जहां पर--

और यहां पर बहुत ज्यादा खलारा पड़ा हुआ है।

और यहां पर बहोत ज्यादा लाइट वगैरा की गई है ताकि जब कोई यहां पर पढ़ने के लिए आए तो उसको अंधेरे की वजह से मुश्किल ना हो और लाइट में वो आसानी से पढ़ सके।

यहाँ पर कुछ टेबल्स और चेयर पड़े हुए हैं ये जो टेबल है वो ए ऐसे पड़े हुए है इनके दम्या ऐ एक बहुत बड़ा टेबल है जिसके सेंटर में --

ये एक बस स्टैंड है जहां पर अ बसें बहोत ज्यादा बसें वगैरा खड़े हैं और सामने वो ए वहां पर एक--

अ ऊपर एक स्टैन्ड लग लगा हुआ है जिसके ऊपर पार्किंग ज़ोन लिखा हुआ है उसके नीचे --

ये सामने बहुत ज्यादा फूल वगेरा मौजूद है यहाँ पर माला है जो सदी व्याह में इस्तमाल होती है जो दूल्हा दुल्हन को एक दुसरे को पहनाते है और यहाँ पर और भी फू--

रकर एक एक आदे इसमे रखा और दूसरा मोह के नीचे आधे रख कर अपना पोज़ बनाकर अपनी तस्वीर ले रहे है और ये पीछे बहुत बहुत --

ये सामने एक लोहे का स्टैंड वगेरा बनाया गया है और यो दो बच्चे स्टैंड के उपर खड़े है और दूसरा एक स्टैंड उपर अभी --

ये ऊपर एक दो औरते बेठी हुई है एक ने येलो कलर का सूट और दूसरे ने रेड कलर का सूट पहना है ।